ओवरव्यू ओएफ थे वेब एप्लिकेशन - लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम आपको वेब एप्लीकेशन से परिचित करायेंगे
इस श्रृंखला में हम दर्शा चुके हैं कि बेसिक इन्वेंट्री सिस्टम कैसे बनाते हैं
हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण उपयोग कर चुके हैं
इस श्रृंखला को सीखने के लिए आपको जानकारी होना ज़रूरी है नेटबीन्स इडे उपयोग करके कोर जावा और एचटीएमएल यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
अब हम वेब एप्लिकेशन - थे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पर देखते हैं
लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एक सिस्टम है जो किताबों को जारी करने और वापस रखने को मैनेज करता है और लाइब्रेरी के यूज़र्स को मैनेज करता है
अब हमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रुरत क्यों है160
ऐसे सिस्टम का उपयोग हमें निम्न में मदद करता है लाइब्रेरियन को लाइब्रेरी में आसानी से किताबों को संचालित करने में एक केन्द्रीय सर्वर पर सदस्यता जानकारी बनाए रखने के लिए समय और संसाधनों को सेव करने में और वर्कलोड कम करने में अब मैं जल्दी से आपको सिस्टम दर्शाता हूँ
इसके लिए मैं नेटबीन्स इडे खोलूंगा
यहाँ हमारे पास एक बहुत आसान सिस्टम है
अब मैं माइफर्स्टप्रोजेक्ट नामक प्रोजेक्ट को रुन करता हूँ
ब्राउज़र विंडो खुलती है
हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का होम पेज देख सकते हैं
हम यहाँ एक बहुत आसान लोगिन फॉर्म देख सकते हैं
यहाँ विजिटर्स होम पेज नामक पेज के लिए एक लिंक है
लिंक पर क्लिक करें
हम लाइब्रेरी में उपलब्ध सारी किताबों की सूची देख सकते हैं
एक लाइब्रेरी कई मेम्बर्स रखती है
अतः अब हम एक मेम्बर की तरह लॉगिन करते हैं यानी एक यूज़र की तरह जो पहले से ही रजिस्टर हो चुका है
मैं मधुसें से लॉगिन करुँगा और पासवर्ड दें और एंटर करें
हम एक सक्सेस ग्रीटिंग पेज देख सकते हैं
हमारे पास यूज़र द्वारा इस समय उधार ली गयी किताबों की भी सूची है
अब लॉगआउट करें
आगे हम एक लाइब्रेरियन की तरह लॉगिन करेंगे यानी एडमिन की तरह
जैसे ही हम लॉगिन करते हैं हम एडमिन सेक्शन पेज देख सकते हैं
यहाँ हम चार विकल्प देख सकते हैं
प्रत्येक की कोशिश करें और परिणाम देखें
पहला हमारे पास लिस्ट बुक्स विकल्प है
यहाँ हम लाइब्रेरी में उपलब्ध सारी किताबों की सूची प्राप्त कर सकते हैं
आगे हमारे पास लिस्ट बोरोवेड बुक्स है
यहाँ हमें भिन्न मेंबर्स को जारी की गयी किताबों की सूची मिलती है
और उन किताबों की सूची है जिनकी वापसी डेट बीत चुकी है
फिर हमारे पास लिस्ट यूजर्स विकल्प है
यहाँ हम उन सभी यूज़र्स की सूची प्राप्त कर सकते हैं जो लाइब्रेरी में रजिस्टर हो चुके हैं
फिर यहाँ हमारे पास checkoutरिटर्न आ बुक विकल्प है
इस विकल्प पर क्लिक करें
यह checkoutरिटर्न बुक के लिए इंटरफ़ेस है
अब हम अपने लोगिन पेज पर वापस आते हैं
ध्यान दें हमारे पास एक नए यूज़र को रजिस्टर करने के लिए एक विकल्प भी है
रजिस्टर करने के लिए हेरे पर क्लिक करें
नए यूज़र को रजिस्टर करने के लिए यह एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है
अतः यह इस आसान वेब एप्लीकेशन का ओवरव्यू है
इस श्रृंखला के अंत में आप इस आसान लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को बनाना सीख जायेंगे
आप इसमें अधिक कार्यक्षमताओं को जोड़ने में भी सक्षम होंगे जैसे एक किताब को खोजने में
इस श्रृंखला में वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हम जेएसपी और सर्वलेट्स का उपयोग करेंगे
आप एमवीसी आर्किटेक्चर को विस्तार में भी सीखेंगे और आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाने में भी सक्षम होंगे जो एमवीसी पैटर्न का अनुसरण करता है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
यदि आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है
ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉन्टैक्ट एटी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर लिखें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
इस स्पोकन ट्यूटोरियल के लिए उन्होंने इस विषय वस्तु की पुष्टि भी की है
मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँहमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद